और जेप्सि से माटी उठाकर ट्राली में रख रहा है और यह शाम का फोटो खींचा हुआ लगता है।

तस्वीर में एक दुकान दिख रहा है दुकान का नाम है उदय इंजीनियर वर्क्स ।

पत्थर भी दिख रहा है और आसाम का फोटो खींचा हुआ लगता है नदी में कूड़े भी पड़े हुए हैं।

और दो कुर्सी भी लगे हुए हैं जिस पर दो आदमी बैठा हुए हैं।

पोस्टर में कुर्सी भी दिख रहा है और नल भी दिख रहा है और एक मोहर भी दिख रहा है।

तस्वीर में एक शोरूम दिख रहा है।

और बहुत सारे स्वेटर भी रखे हुए है जो अलग अलग रंग के हैं और कम्बल भी रखे हुए हैं।

तस्वीर में कॉफी के दुकान दिख रहा है जो छोटा सा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है जो नीला कलर का है और इस पर लिखा है लोअर दगा ग्रामीण हेचरी।

यह एक बैग दुकान का तस्वीर दिख रहा है।

तस्वीर में एक हाल दिख रहा है जो बहुत बड़ा हाल है।

और दो बनाना का पेड़ भी दिख रहा है जो मंदिर के अलग बलग है।